यह एक कार्यालय है जोकि सफ़ेद रंग का बना हुआ है बाहर की तरफ एक--

लग रहा है नदी का पानी पूरी तरीके से नीला रंग का नजर आ रहा है और पीछे की तरफ --

एक रोड है जिसमें सफ़ेद रंग की एक लाईन खिंची हुई है और दोनों तरफ़ बहुत सारे पेड़ हैं ।

एक व्यक्ति यहाँ पे मछली बेच रहा है जोकि सर में पगड़ी बांधे हुए है और शर्ट पहना हुआ है और साथ में तराजू लिये हुए हैं ।

लूँगी और शर्ट पेहने हुए है एक बड़ा -सा ड्राम भी है नीले रंग का एक पाइप लगी हुई है मछली को धोने के लिए --